हमने एक टेबल पर एक दाल का पकोडा रखा हुआ है सामने चटनी रखा हुआ है सलाद रखा हुआ है सलाद मे खीरा है गाज़र है वह इ--